पीछे पानी बह रहा है।

यहां बहुत सारे औरत और आदमी है।

बराबर में गेट है जिसके पास छोटा घास उगा है।

नीचे बहुत सारी सफेद रंग की बाल्टीयां रखी हुई हैं।

यहां पर एक व्यक्ति है जिसने मास्क लगाया हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं।

बराबर में बहोत सारे तार लगाए हुए हैं।

सामने कांच का गेट लगा हुआ है।

बराबर में एक बाइक खड़ी हुई है।

सामने दुकान में काले रंग की पन्नी लगी हुई है।

सामने काउंटर है जो कांच का है।

बराबरो में दो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए है।

ये एक खाने के सामान की दुकान है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा है।

इस पर लिखा है शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर ।

सामने एक बिल्डिंग है जिसमें लाल रंग का दरवाजा लगा हुआ है।

पीछे एक बड़ा घर है जिसमें नीले रंग के दरवाजे और जंगली लगे हुए हैं।

यहां बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है जिनमें से कुछ कुर्सियां स्टील की लकड़ लकड़ी की और प्लास्टिक की है।

नीचे बहुत सारे बाइके खड़ी हुई है।

नीचे सड़क पर बहुत सारा कचरा हुआ है।